जिसमे कुछ सफेद रंग से रंगे हुए हैं तो कुछ बिना रंग के हैं और बीच मे एक टूटी-फूटी खाली सड़क है।

जिसके अगल-बगल ढेर सारे पेड़ और पौधे सुंदरता का केंद्र बने हुए है।

जिसके ऊपर सिद्ध नाथ स्टेशनरी लिखा हुआ है और दुकान में कुछ किताबे रखी हुई है।